यहां पर काफी हरे पेड़ नजर आ रहे है और यहाँ पर वॉटरफॉल नजर आ रहा है कुछ पानी दिखाई दे रहा हैचट्टाने काफी बड़ी-बड़ी नजर आ रही हैं ।

जहाँ दिवार हैवो सफेद रंग की दिख रही है और ये शटर नजर आ रहा है जो ग्रे कलर का है।

छोटे रिक्शे वहा दिखाई दे रहे है हरी घास सुखी घास वहा नजर आ रहे हैं स्ट्रेट वर्क दिखाए दे रहे हैं लोग नजर आ रहे हैं और आसमान साफ दिख रहा है।

यहाँ पर बहुत बड़ा बिल्डिंग नज़र आ रहा है जो सफेद रंग का है वहाँ पर एक ट्रक नज़र आ रहा है वही पर काफी और सामान नज़र आ रहा हैं ।

--पर एक मार्किट नजर आ रहा है जहाँ पर काफी सारे शॉप्स दिखाई दे रहे हैं और वहीं पर कार नजर आ रही है जो वाइट कलर की दिख रहे है और बाइक्स दिख रहे हैं जो साइकिल है वह नजर आ रहे हैं शेप दिख रहे हैं और वहीं पर काफी हरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल की तरह काफी लैंप लाइटस लगी हुई है और वहाँ पर काफी लोग नजर आ रहे है एंट्रेंस गेट भी काफी अच्छा दिख रहा--

और वहाँ आसमान भी जो है वो काफी साफ दिखाई दे रहा है।

काफी हरे पेड़ नजर आ रहे है पर्वत नजर आ रहा है जिस पर भी काफी हरे पेड़ दिखाई दे रहे है आसमान जो साफ नजर आ रहा है।